यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है इसमें ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे है।

यह एक महिला चेयर बैठी दिखाई दे रही है इसके बालों में कई तरह के हैयर स्टाइल दिखाई दे रही है बालों में रिबन लगे हुए दिखाई दे रहे है आधे बाल खुले दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक शॉप दिखाई दे रही है जो की किराने की है इसमें ऊपर एक पोस्टर लगा हुए हैं जिसमे एक आदमी बना हुआ है।

खाली दिखाई दे रहा है तथा एक ने यहाँ कोटी पेहनी दिखाई दे रहा है यहाँ कांच के इसमें रखे दिखाई दे रहे है तथा एक गिन जट फर्श पे दिखाई दे रहे हैं।

कलर का गेंडे की तस्वीर बनी दिखाई दे रहा है इस पे एक बच्चा बैठा हुआ है तथा एक आदमी जो कि पाहाड़ पे खड़ा हुआ है पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इनने माला पहन रखी है इनके आगे एक अ हम्म बड़ा हम्म फ्लोअर दिखाई दे रहा है ।